और डमी को भी कपड़े पहनाए हुए हम यहां--

यहां पर सोफा लगा हुआ है जिसके ऊपर पिंक कलर का कवर बिछा हुआ है एक टेबल हम यहां पड़ा हुआ देख सकते हैं।

दीवार पर एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई है।

तीन चार यहां पर आदमी खड़े हुए हैं।

ट्राएंगल और बहोत ही सुंदर सुंदर सी चीजे बनाई हुई है जो कागज से बनी हुई है।

यह एक क्यारी टाइप बनाया गया है एक बड़े से गमले में पेड़ लगाया गया हुआ है।

और उनके नीचे हरी हरी पत्तियां हरा भरा घास बड़े बड़े पेड़ हम यहां देख सकते हैं।

यहां पर हम हरा रंग हुआ वा देख सकते हैं।

दिवारों पर पेंटिंग लगी हुई है वेल फैन यहां लगे हुए हैं।

सामने एल_सी_डी लगी हुई हम देख सकते हैं।

यहां हम देख सकते हैं कि यहां सड़क पर काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई है।

आसपास बड़े बड़े पेड़ हमें दिख रहे हैं यहां पर बसे भी खड़ी हुई हैं।

आसपास बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

उसके आगे एक काले रंग की कुर्सी लगी हुई है और एक कुर्सी साइड में सफेद रंग की पड़ी हुई देख सकते हैं।